घर में एक गेट दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक छोटा सा गार्डन दिखाई दे रहा है।

तीन ठो लाइट दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा चेयर दिखाई दे रहा है।

और सारा पिलर भी दिखाई दे रहा है।

रूम के अंदर में चार ठो चेयर दिखाई दे रहा है।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

बीच में बहुत सारा कॉस्मेटिक सामान भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे लंबा सा धोकर दिखाई दे रहा है।

गेट में बहुत सारा फ्लावर टंगा के है।

और वायर भी दिखाई दे रहा है।

बाहर में फूल भी टंगा के दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा पाइप भी दिखाई दे रहा है।

एक फैन दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा वायर भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा डिक्ची भी दिखाई दे रहा है।